custom exceptions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: custom exceptions और throw और throws keywords का उपयोग
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ : ubuntu linux 1604 os jdk 17 और eclipse 431
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको java में exceptions handling का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए यदि नहीं है तो संबंधित java tutorial के लिए कृपया निम्न link पर जाएँ
पहले custom exceptions के बारे में सीखते हैं
custom exception एक user defined exception class है इसे आमतौर पर checked exceptions के रूप में बनाया जाता है
इसका उपयोग यूजर की आवश्यकता के अनुसार exception customize करने के लिए किया जाता है
हम eclipse खोलेंगे और customexceptiondemo नामक एक now project बनायेंगे
custom exceptions के प्रदर्शन के लिए इस project में हम आवश्यक classes बनायेंगे
हम नया class invalidmarkexception बनायेंगे
इसे exception class का प्रकार बनाने के लिए यह java exception class का subclass होना चाहिए
ऐसा करने के लिए type करें extends exception
source menu पर click करें और फिर generate constructors from superclass चुनें
all दाईं ओर पर deselect all button पर click करें
फिर single string argument के साथ constructor को चुनें और नीचे ok button पर click करें
इस string argument का उपयोग प्रदर्शित message को customize करने के लिए किया जा सकता है जब यह exception आता है
studentmarks named अन्य class जोड़ें
फिर निम्न code type करें
इस class में marks named केवल एक variable है
यह constructor marks की value इनिसिलाइज करता है
marks को मान्य करने के लिए method जोड़ें
marks की सामान्य श्रेणी 0 से 100 तक होती है
यदिmarks less than 0 or greater than 100 परिष्कृत है invalidmarkexception आयेगा
इसके लिए हमें custom exception को हटाने के लिए throw keyword का उपयोग करने की आवश्यकता है
यदि mark सही है तो entry ok प्रदर्शित होगा
हम देख सकते हैं कि यहाँ एक invalidmarkexception error है
इस check करें और पुनः हल करें
error पर click करें और add throws declaration पर double click करें
हम देख सकते हैं कि method signature में throws invalidmarkexception जोड़ने पर error गायब हो जाती है
यहाँ हम देख सकते हैं कि throws keyword का उपयोग methods के साथ किया जाता है
यह दर्शाता है कि मैथड specified exception को बढायेगा
हमें exception handling प्रदान करना होगा जब इस मैथड का code किया जाता है
अब file access operation दर्शाते हैं जो filenotfoundexception को बढायेगा
filereader class का एक उदाहरण बनाने के लिए निम्न code type करें
eclipse कुछ errors दिखायेगा क्योंकि हमने संबंधित java packages को imported नहीं किया है
उसको सही करने के लिए error पर click करें और फिर import filereader java io पर double click करें
हम package और उसके उपयोग के बारे में बाद के tutorial में सीखेंगे
home folder में marks नामक file को access करने के लिए fr को अनुमति देने के लिए निम्न code type करें
यहाँ दिखाए गए path को अपने system के home folder के साथ बदलें
एक error दर्शाती है कि code की यह line filenotfoundexception को बढ़ा सकती है
हम throws clause में इस exception को जोड़ कर इसे सही कर सकते हैं
हम देख सकते हैं कि filenotfoundexception भी throws clause में जुड़ गया है
जैसा कि यहाँ दिखाया गया है हम का उपयोग throws करके कई exceptions को नियंत्रित कर सकते हैं
अब हम studentmarks class में main method बनायेंगे और परिणामों का सत्यापन करेंगे
यहाँ हमने marks के लिए value के रूप में 40 इनिसीलाइज करने के साथ एक object m1 बनाया है
अगली line में हम m1 object का उपयोग करके validate मैथड लागू करते हैं
हम देख सकते हैं कि यहाँ एक error है जब validate method लागू होता है
यह दर्शाता है कि यह मैथड invalidmarkexception और filenotfoundexception को बढायेगा
error को सही करने के लिए हम main method में throws clause जोड़ सकते हैं जैसा हमने पहले किया
लेकिन try और catch block का उपयोग करने की सलाह दी जाती है
अतः surround with try/catch पर click करें
अब आवश्यक trycatch blocks जोड़े गए हैं और are added and the exception को नियंत्रित किया गया है
अब program now करें
यह दर्शाता है entry ok और rest of the code
यह इसलिए होता है क्योंकि marks की value 40 एक सही प्रविष्टि है
अब value को10 करें जो सही प्रविष्टि नहीं है
हम program को फिर से रन करेंगे
अब हम देख सकते हैं कि invalidmarkexception को हटाता है क्योंकि10 सही प्रविष्टि नहीं है
चूँकि हमने exception को नियंत्रित कर दिया है हम rest of the code message देख सकते हैं
इसके बजाय यदि हम throws clause का उपयोग करते हैं तो यह message rest of the code printed नहीं होगा
और program terminated हो जायेगा
अतः try catch block का उपयोग करना बेहतर है जब main method में एक मैथड कॉल किया जाता है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा : custom exception क्या है throw और throws keywords का उपयोग custom exceptions को कैसे बनाएँ और उपयोग करें
नियतकार्य के रूप में: invalidageexception नामक custom exception class बनाएँ
अन्य class age बनाएँ और age की value को इनिसीलाइज करने के लिए constructor बनाएँ
एक exception का हटाने के लिए method validate भी बनाएँ यदि उम्र 18 से कम है
main method में objects बनाएँ और validate method लागू करें
जब भी आवश्यक हो trycatch blocks का उपयोग करके exception handling प्रदान करें
custom exception class का सत्यापन करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है online परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपयाcontact @spokentutorial org पर लिखें
spoken tutorial project एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह script विकास द्वारा अनुवादित है
iit बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूं हमसे जुडने के लिए धन्यवाद